और यहाँ पर कुछ लोग बैठे है कुर्सी पर कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पर काफी अच्छी सजावट की गई हुई है यहाँ पर एक बड़ी सी बीडलिंग बनी हुई है कुछ टेंट लगा हुआ है ।

यहाँ पर शाम का टाइम है। एक नाव दिखाई दे रही है पानी में यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है। यहाँ तालाब--

और यहाँ पे पेसन एक मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है ब्रिज पे--

यहाँ पर कई सारी लाइटे लगी हुई है पअ अ बलूंस लगे हुए है और कुछ तिरंगे के झंडे लहराते हुए यह कुछ फोटो फ्रेम लगी हुई है।

यहाँ पर बिल्डिंग कुछ कई सारी लाइटें लगी हुई है यहाँ पर कई सारे समान रखे हुए है कुछ अलमारी में रखे हुए है यहाँ पर एक अंकल खड़े हुए है।

यहाँ पर बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नाँवे दिखाई दे रही है और यहाँ पर ब्रिज जैसा बना हुआ है यहाँ पर सुखी दवा दिखाई दे रही है।